एक आलू को ब्लर किया हुआ दिखाई दे रहा है।

और मुझे बहुत सारे खिड़की और दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

और काले प्लास्टिक दो तीन दिखाई दे रहे हैं।

और वॉल में एक घड़ी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आगे की ओर खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

जहां सारे मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आसपास मुझे घर भी दिखाई दे रहा है।

और दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

आगे तस्वीर में मुझे एक घाट का दृश्य दिखाई दे रहा है।